इस चित्र में हम देख सकते है कि एक दुकान के अन्दर--

आगे एक साइड एक ब्लू कलर का गेट भी है उसके पास में एक--

बहुत से कलरो के कपड़े व टॉवल रखे हुए है।

इस चित्र में हम यह देख सकते हैं।

की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके आसपास--

इस चित्र में यह बताया गया है कि--